जिम है यहां पर बहुत सारे लोग अपनी बॉडी --

तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर है एक--

तो जैसा की आप--

जोकी बहोत सारी मार्केट की--

में बहोत सारे पेड़ हैं और यहां पर बहोत सारे--

सकते हैं यहां पर--

तो जैसा कि आप--

तो जैसा कि आप देख--

पोस्ट ऑफिस है यहां पर बहुत सारे--

यहां पर कार सर्विस --

सकते हैं यहां पर एक--

बहोत बड़ी हवेली है जहां पर कु--

तो जैसा की आप देख सकते हैं।